हिरण देख रहले हेय ऊपर भी ताक रहले हेय नीचा भी देख रहले हेय --

ओकर नीचा में एगो घास है। थड़ा-सा घास लगल है एगो गाछी है।

एगो इस स्कूल है। इस स्कूल के में बड़कागो फील्ड है।

दू-तीनगो गप्प करल ह खड़ा होके --

हस रहले भी है खड़ा होले बहुत अच्छा से बच्चा।

हेय ओकर बगल में हेय सादा रंग के भी हेय आसमान भी दिखा रहले हेय सादा हेय।

इ एगो ब्यूटी पार्लर है बड़का गो --

रंग काला रंग के टैम्पू एगो है ओकरा में पीला भी रंग है।

अ दूकान है टीना देवल है ऊपर में।